श्री रानी सती मंदिर जो टाटी धाम है उसका एंट्रेस गेट देख पा रहे है जो काफी बड़ा और काफी --

ये एक रेस्टोरेंट सीन है यहाँ पे और बहुत ही लजीज सी दिखने वाली डिश यहाँ पे देख सकते हैं इग्ज़ैक्ट नाम तो नहीं पता किसी टाइप का रोल हैं समझमे नहीं आ रहा हैं।

आँड साथ ही साथ इसमे साइड मे स्तरतूप भी दी गई हैं हरी धनी की चटनी हैं ओर ऊपर से शायद न्यू वगैर छिटक गया हैं काफी लजीज लग रहा हैं।